और एक आदमी परे मुंह करके बैठा है उसने सफ़ेद बनियान पहन रखा है एक सामने बैठा हुआ है।

और वह जिम कर रहे हैं उसके बराबर में एक थोड़ा सामान वो रखा है उसका आगे थमला है थमले के ऊपर कुछ गुब्बारे भी लगे हुए है।

वेह वहां पे कुछ देख रहे हैं और दीवाल है उस दीवाल का रंग सुफेद है वो नीचे उसमें जंगड़े भी है जंगड़े का रंग काड़ा है और एक लड़की ने तो अपने--

यह एक रोड है इस रोड के बीचों बीच एक द्वार है उस दीवार पर कुछ ग्रिल लगी हुई है।

वहां पे एक मास्टर भी है उस मास्टर का मुंह छिपा हुआ है कुछ लड़कियों के भी मुंह छिपे हुए है।

और उसे नीचे एक दीवार है दीवार का रंग भी सफेद है उसके नीचे कुछ कचरा पड़ा हुआ है और कचरे के बीच में दो पेड़ भी है।

इस पेड़ से बराबर में एक सड़क है सड़क से आगे कार खड़ी हुई है वह कार सफेद रंग की है और कार के ऊपर--

और ऊपर एक लाइट भी लग रही है लाइट के बराबर में एक बोर्ड भी है उस बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है और नीचे दीवाल पे भी लिखा हुआ है उसमे शटर भी खुले है।

वह नीचे उस पे हरे रंग की चटाई है पिछली साइड में दो कमरे भी है और एक छतरी भी है वह नीले रंग की है।

और अंदर ले साइड में गैलरी में कारो एक स्कूटी भी है और उसके अंदर एक जिंदा भी देख रहा है जिन्दे से बाहर गैलरी में पंखा भी है बाहर के साइड में कुछ ईंटे बिछी हुई है।

यह एक हॉल है इस हॉल में कुछ लाइटें लगी हुई है बाहरली साइड में भी कुछ लिखा हुआ है और वे लाइट कलर में है।

और उसकी बराबर में जीना भी चढ़ा हुआ है और जीने की बराबर में एक दुकान भी है उस दुकान का शटर बंद है।

और फ्रिज ऊपर एक डिब्बा भी है डिब्बे से यहां पर दीवाल पर कुछ पन्नियां टंगी हुई हैं।

ओ उसके बराबर में नीचे दो ए_सी लगी हुई है और इसके बराबर में दो फोटो भी है।

एक औरत ने ऊपर उठा रखी है और एक ने बुर्खा पहन रखा है बुरखे वाली का हाथ में नीले कलर का थैला भी है।

यह दुकानें है इस दुकान के ऊपर भी कुछ चार दुकानें हैं उस दुकान के ऊपर बीच मे एक ए_सी लगी हुई है।

यह एक घर है इस घर के अंदर एक कार भी खड़ी हुई है उस कार पे एक कपड़ा पड़ा हुआ है उसके बराबर में एक बाइक एक साइकिल भी है।

एक आदमी के हाथ में कुछ समान है और एक आदमी उसकी देख रहा है और उसकी बराबर में एक गेट भी है वे गेट बंद हो रखा है।

उस गेट के बराबर में तीन कुर्सियां भी हैं वह कुर्सियों का रंग लाल है उस कुर्सियों के ऊपर ए--

यह एक हॉस्पिटल है इस हॉस्पिटल के बाहर दो तीन औरता दो तीन लोग भी खड़े हुए हैं।

उस ऊपर ले रूम पे कोई एक इंसान देख रहा है और उस से उरे एक एक कोई बहुत ही शानदार शीशा है।

और दीवार का रंग कुछ चॉकलेट जैसा है और अंदर ले साइड में एक हरे कलर से पट्टी भी है।

इसमें कुछ आदमी भी है वह एक आदमी ने नीले रंग की बनियान पेहन रखी है।

ये इंसान एक कुर्सी पे है उसके बराबर में एक कुर्सी और है उसके सामने एक कुर्सी और पड़ी हुई है।

रोड के बराबर में एक बाग भी है एस बाग में हरे हरे पेड़ भी लगे हुए हैं अंदरली साइड में एक स्कूटी खड़ी हुई है।

गाड़ी के बराबर में एक आदमी भी है और उसके बराबर में एक गेट भी है वह एक गेट खुला हुआ है।

और वहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है उस आदमी का मुंह छुपा हुआ है और उसमें एक एल_इ_डी भी है और सीसे भी दिख रहे हैं कुछ हरे हरे इसमें माले भी है।